एक बरंदा दिखा के है जिसमें बरंदा के सामने में एक सीढ़ी है।

दो कार दिखाई दे रहे हैं और ठो आ दो ठो औरत बैग को लेते हुए जाते हुए दिख रहा--

तीन ठो मिस या मैडम असल दिख रहा है और ए रूम में है रेड कलर का कारपेट बिछाके है।

आधा जो नहीं बिछा के हैं जिसमें टाइल का फ्लोर है।

इसमें बहुत ढेर सारी मिठाई अलग अलग कलर का है लड्डू अंडा का जैसा कलर भी।

और ये पेट्रोल का ठीक उसके पीछे में एक घर है।

इंडिगो एयरपोर्ट जो हमें पैसेंजर्स लोग भी ज्यादा नहीं दिख रहे--

एक दो ऐसे ही दिख रहे--

कपड़ा रेड कलर का भी है।

सामने में पेड़ पौधा पेड़ सब हैं।

एक बरांडा जैसा दिख रहा है जो की चेयर टेबल जो की सोफा सेट्स भी है टेबल भी है।

छोटा सा छत का सामने एक रूम है।

रॉड खड़ा करके देख रहे--

एक रास्ता खाली रास्ता दिखा के है स्कूटी आगे में एक स्कूटी है उसका आगे में एक स्कूटी जैसा है।

मंदिर का आगे आगे दिखा रहा है जैसा है जो कि बाजार जैसा भी है।

और यह एक घर जो फिर उसका--

हमें एक लैपटॉप दिखा रहा है लैपटॉप का रूम जैसा है।